कई सारी खिड़कियाँ नज़र आ रही है नीचे कई सारे मुसलमान लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं।

बड़ा-सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमे कई सारे कछुए नजर आ रहे हैं कुछ पत्तियाँ भी दिख रही हैं।

एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर दुबई कार्स वर्क शॉप लिखा हुआ है बाज़ू में एक ट्रक खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ।

तीन मेज नजर आ रही हैं मेज के ऊपर कागज दिखाई दे रहे हैं ।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं बिजली के तार नजर आ रहे हैं ।

पीले रंग की दीवार नजर आ रही है अंदर लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है ।

उसके हाथ में चूड़ियाँ दिखाई दे रही है पीछे दरी दिखाई दे रही है कुछ बिजली के तार भी दिखाई दे रहे हैं एक स्क्रीन नजर आ रही है।